यहाँ पर कोई मशीलीम का लाश रखा हुआ है उ खटोला पर रखा हुआ है एक आदमी टोपी पहेने बगल में खड़ा है।

हेलो दिस इस मुकेश फर्म पुर --